ये एक मिठाई का शॉप है यहाँ पे बिस्किट वगैरा टोस्ट वगैरा मिक्सर वगैरा मिठाई--

प्रैअर करने आते हैं और चर्च मे पच्चीस दिसमबर को बहोत ही धूम-धाम से--

यह एक नर्सिंग कॉलेज है यहाँ पे स्टूडेंट्स नर्सिंग की पढ़ाई या डॉक्टरी की पढ़ाई करने के लिए आते हैं।

यहाँ से पढ़ाई करने के बाद वह डॉक्टर या नर्स बनते है उसके बाद दूसरों की मदद या इलाज करते हैं।

टेबल लगाई गई है यहाँ पर खूब सारी सुंदर-सुंदर बड़े-बड़े पेड़ लगाए गए हैं।

ये एक कोचिंग सेंटर है वहाँ पे पढ़ाई होती है और यहाँ बहोत सारे मॅप या पोस्टर लगे हुए हैं पढ़ाई से--

और इसका नाईट में व्यू बहुत सुन्दर दिखता है और यहाँ से शहर बहुत सुंदर दिखता हैं रात में --